--और यह पुट्टा हुआ यह पिंक है देखने में भी यहाँ ए_टी_एम अंदर पइसा निकल भईया --

बहुत सारे बच्चे है ब्लू कलर में पहना है और यह एक दीदी भी खड़ी हुई है दो।

और ये टेबल रखी हुई हैं भईया खड़े हुए हैं और यहाँ बहुत सारी चीजे रखी हुई हैं पंखा भी लगे हैं अच्छे और ल लाइट भी लगी हुई हैं।

अम्म वो भी रखी हैं मूर्ति की और यहाँ लाइट भी लगी हैं मस्त और पंखा भी हैं और नीचे मेट लगी हुई हैं रेड कलर में--

गाडी शोरूम हैं यहाँ गाडी धुलती हैं।

प्रत्यक्ष भईया से दूर हैंसेटअप से दूर हैं और ये हुए हैं।